घास है पेड़ पौधे है।

किताबे है काउंटर है रीख है कॉपी है बच्चे है बेनर है ।

गुफा है एक लड़का है पत्थर है।